बहुत से लोग दिखाई पर रहे है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर के कपडे पहन रखे है पीछे कुछ पेड़ जैसा दिखाई पर रहा है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई पर रहा है सामने एक लेडी भी खड़ी हुई है एक कुछ लोग पत्थर पर बैठे हुए है और फोटो ले रहे है।